और यहां पे बहुत सारा बोडा दिख रहा है।

यहां पे एक आदमी दिख रहे हैं और यहां पे लाइट भी बर रहा है।

फील्ड के बाहर बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है।

यहां पे एक टेबल है।

ये बहुत सारा कार्टून दिख रहा है।

यहाँ पे एक मकान बनाया गया है।

और मकान के बगल में बहुत सारा पेड़ दिख रहा है।

ये एक नदी का दृश्य दिया गया है।

ये एक बहुत बड़ा गेट बनाया गया है।

बड़ा बिल्डिंग का दृश्य दिया गया है।

यहां पे बहुत सारा घास दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारा पत्ता सूखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारा मिट्टी का बर्तन बनाया गया है।

यहां पे खिड़की भी दिख रहा है।

जिसमें झूला भी दिख रहा है और यहां पे आदमी बहुत सारा दिख रहे हैं।

यहां पे एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिख रहा है।

और यहां पे दो आदमी दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारा दिख रहे हैं।

यहाँ पे बहुत सारा मकान दिख रहे हैं और यहां पे बहुत सारा आदमी भी दिख रहे हैं।

और एक बोतल दिख रहा है।

यहां पे डीजल कल का दुकान दिख रहा है।

बहुत सारा मोटर का डिब्बा दिख रहा है।